प्यारे से छवि इसमें एक बहुत सुंदर सा चर्च दिखाई दे रहा है।

जो जीसस है और कुछ पोस्टर हैं जीसस के--

थोड़े लोग चल चल रहे हैं।

एक ऑटो में जा रहा है बहुत सारे स्टैचूज हैं।

पीला पिंक ग्रीन सब कलर --

और यहां पे फिल्म दिखाई जाती है।

छवि में एक बस स्टॉप दिखाई दे दिया जा रहा है जो --

यहां पे एक बहुत सुंदर सा मॉल दिखाई दे रहा है।

टू सिक्स ई सेवन फोर सिक्स नाइन --

और बहुत सारे आइसक्रीमस है।

और यहां पे अंग्रेजी में न्यूता--

की सीलिंग बहुत अच्छी है सीलिंग के लाइटिंग बहुत अच्छे --

अंग्रेजी में विनोद कुमार एंड कंपनी लिखा गया है।

और इसमें ऊपर बहुत प्यारी सीलिंग के लाइटिंग दिए गए हैं।

ये टू थाउजेंड ऐट में है।

छवि में एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है ए_टी_एम का नाम इ।

अंदर जाके कुछ लोग कैश विड्रॉ करते हैं डिपॉजिट कर --

छवि में एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें--

और इसमें वाटरमेलन और पाइनएप्पल दिखाई दे रहा है।

इस छवि में मछलियां दिखाई दे रही हैं--

ये मछलियों का दुकान है।

समता योग आश्रम लिखा गया है।